ruby में object oriented concept के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग करना सीखेंगे
क्लासेस
ऑब्जेक्ट्स बनाना
ruby में methods परिभाषा के भिन्न तरीके
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
ubuntu version 1204
ruby 193
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने पहले ही ttt डिरेक्टरी बनायीं थी
अब उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
ruby hyphen tutorial और classes डिरेक्टरी पर
ruby एक object oriented भाषा है
ruby में वैल्यू से string या नंबर तक सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है;
एक class सम्बंधित data और functions का संग्रह है
यह व्यवस्थित जानकारी को रखने के काम आ सकता है
एक object class को प्रमाणित करता है
एक class की परिभाषा कीवर्ड क्लास के साथ शुरू होती है
इसके बाद class का नाम आता है
यह end के साथ सीमांकित होता है
अब class का एक उदाहरण देखते हैं
class product
ruby कोड
end
class का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए
नाम जिसमें एक से अधिक शब्द हों कैमल केस camel case में होने चाहिए
उदाहरणस्वरूप
userinformation
productinformation
बाद वाली फाइल्स के नाम के शब्दों को अलग करने में अंडरस्कोर का प्रयोग होगा
user underscore information
product underscore information
ruby के प्रारंभिक ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित जैसे ही gedit में एक नयी फाइल बनायें
इसको class_definitionrb नाम दें
मेरे पास क्लासेस के कार्यान्वयन का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में क्लास नामक order को परिभाषित किया है
अब कुछ वेरिएबल्स जोड़कर class को उपयोगित बनाते हैं
फिर एक इंस्टैंस वेरिएबल myinstance परिभाषित किया है
और इसको एक वैल्यू नियुक्त की है
मैंने एक क्लास वेरिएबल myclassvar भी परिभाषित किया है
और इसको एक वैल्यू नियुक्त की है
अब क्लास के उपयोग के लिए कुछ कोड जोड़ते हैं
टाइप करें puts order dot instance underscore variables
इस लाइन से पहले एक नयी लाइन के लिए puts कुछ कैरेक्टर्स स्लैश n जोड़ें
उसको कॉपी पेस्ट करें और जोड़ी हुई लाइन के नीचे इसे जोड़ें और इसे सेव करें
अब इस code को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
ruby space class underscore definition dot rb
और आउटपुट देखें
आप परिभाषित instance वेरिएबल देखेंगे
अब टाइप करें puts order dot class underscore variables
इस सीमांकन को लाइन के बिल्कुल नीचे कॉपीपेस्ट करें और सेव करें
अब टर्मिनल पर जाएँ और पहले की तरह ही फाइल को निष्पादित करें
आप परिभाषित क्लास वेरिएबल देखेंगे जो स्पष्ट भी होता है
अब आप अपना क्लास लिखने के लिए सक्षम हैं
आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है
एक ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टैंस है
जिसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है
ऑब्जेक्ट क्लास में परिभाषित विशषताएं और मेथड्स रखेगा
आप ऑब्जेक्ट कैसे घोषित करते हैं
हम एक नया कीवर्ड उपयोग करके क्लास का ऑब्जेक्ट घोषित करते हैं
यहाँ हम product क्लास का ऑब्जेक्ट घोषित कर रहे हैं
यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है
product = productnew
यह प्रक्रिया ऑब्जेक्ट का प्रारंभन कहलाती है
यह ऑब्जेक्ट product का प्रकार है
अब देखते हैं प्रारम्भिक मेथड क्या है
initialize मेथड ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉल हुआ है
ऑब्जेक्ट पर न्यू new कॉल करने के लिए इनिशियलाइज़ initialize मेथड उपयोग करते हैं
इनिशियलाइज़ मेथड के पास पैरामीटर्स की सूची हो सकती है
अन्य ruby मेथड्स की तरह यह def कीवर्ड के बाद आता है
एक उदाहरण देखते हैं
प्रारंभिक स्तर के ruby ट्यूटोरियल्स की तरह ही gedit में एक नयी फाइल बनायें
और इसको object undescore initialize dot rb नाम दें
मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रारंभन initialization कोड का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
यहाँ मैंने एक order नामक क्लास को परिभाषित किया है
फिर बिना आर्गुमेंट के मैंने एक इनिशियलाइज़ मेथड को परिभाषित किया है
मैंने एक puts मेथड को परिभाषित किया एक मैसेज प्रदर्शित करने के लिए i have created an object
आगे मैंने order डॉट new को परिभाषित किया
यह इनिशियलाइज़ मेथड का उपयोग करेगा
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
ruby space object underscore initialize dot rb
और आउटपुट देखें
आप मैसेज देखेंगे i have created an object
अब वापस gedit पर जाएँ और मेथड में एक आर्गुमेंट जोड़ें
अब puts में परिवर्तन करते हैं
यह पास किये हुए आर्गुमेंट की वैल्यू प्रदर्शित करना चाहिए
आगे टाइप करें
order dot newi have created an object
यहाँ हमने न्यू मेथड को एक आर्गुमेंट दिया है
यह आर्गुमेंट इनिशियलाइज़ मेथड को पास किया जाता है
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
ruby space object underscore initialize dot rb
और आउटपुट देखें
आप प्रिंट किया हुआ मैसेज i have created an object देखेंगे
अब आप ऑब्जेक्ट प्रारम्भन initialization का मतलब समझ चुके होंगे
याद रखें ruby में फंक्शन्स हैं जो क्लास प्रदर्शित करते हैं
क्लास में प्रत्येक मेथड def और end ब्लॉक में परिभाषित है
मल्टीवर्ड मेथड नेम अंडरस्कोर से अलग हुआ है
कुछ करैक्टर्स characters जो मेथड नेम के साथ संलग्न हुए है निम्न हैं:
questionmark
= equal to
प्रत्येक करैक्टर मेथड में कुछ मतलब जोड़ता है
अब कुछ उदाहरण देखते हैं
प्रारंभिक स्तर के ruby ट्यूटोरियल्स की तरह ही gedit में एक नयी फाइल बनायें
और इसको class underscore methods dot rb नाम दें
मेरे पास क्लास मेथड्स कोड का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
यहाँ मैंने animal नामक एक क्लास को परिभाषित किया
फिर मेरे पास दो मेथड्स हैं breathe और walk
यह दोनों का def और end कीवर्ड्स के साथ परिभाषित हुए हैं
फिर मैंने ऑब्जेक्ट animal को प्रारम्भ किया
मैंने इसे वेरिएबल animal नियुक्त किया लोअरकेस a के साथ
फिर मैंने क्रमानुसार मेथड्स breathe और walk का उपयोग किया
अब program को निष्पादित करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
ruby space class underscore methods dot rb
और आउटपुट देखें
आप लाइन्स देखेंगे :
i breathe
i walk
प्रिंट हुई हैं
यह इसलिए है क्योंकि आपने दो मेथड्स breathe और walk उपयोग किये हैं
puts स्टेटमेंट इन मेथड्स में परिभाषित है परिणाम देते है जो आप देखते हैं
आगे देखते हैं कि एक अनुगामी question मार्क के साथ मेथड्स कैसे बनाते हैं
प्रारंभिक स्तर के ruby ट्यूटोरियल की तरह ही gedit में एक नयी फाइल बनायें
और इसे class underscore methods underscore with underscore trailing underscore characters dot rbनाम दें
मेरे पास question मार्क कोड के साथ क्लास मेथड्स का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
यहाँ उदाहरण के लिए मैंने पहले की तरह ही समान क्लास ली है
यहाँ breathe मेथड अनुगामी क्वेश्चन मार्क question mark रखता है
ऐसे मेथड्स सामान्यतः boolean वैल्यूज रिटर्न करने में उपयोग होते हैं
यह ruby के मेथड नेमिंग कन्वेंशन naming convention पर आधारित है
animal dot breathe questionmark घोषित करके मेथड उपयोग हुआ है
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
ruby space class underscore methods underscore with underscore trailing underscore characters dot rb और आउटपुट देखें
आप आउटपुट में ट्रू देखेंगे
आगे हम दूसरे मेथड walk को परिभाषित करते हैं
इसके पास एक साइन लगाएं equal to =value
animal dot walk कॉल करके इसको उपयोग करें
फिर इस मेथड को निष्पादित करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
ruby class underscore methods underscore with underscore trailing underscore characters dot rb
और आउटपुट देखें
यह एक undefined मेथड एरर देगा
यह इसलिए है क्योंकि equal to साइन अलग मतलब रखता है
यह एक मेथड को वैल्यू नियुक्त करने में उपयोग होता है
अब इस बार मेथड को कुछ अलग तरह से उपयोग करते हैं
टाइप करें puts animal dot walk equal to hops
अब एक अन्य कोशिश करें
टर्मिनल पर जाएँ और पहले की तरह ही कमांड रन करें और आउटपुट देखें
अब देखेंगे कि शब्द hops प्रिंट हुआ है
यह प्रदर्शित करता है कि मेथड के आगे equal टू साइन का मतलब है नियत कार्य
अब आप अपने मेथड्स को लिखने में सक्षम होने चाहिए
इस tutorial में हमने सीखा
classes कैसे घोषित करें
क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनायें
ruby में मेथड्स परिभाषा के भिन्न तरीके
एक नियत कार्य की तरह :
एक class product परिभाषित करना
myvar की वैल्यूज और myvar के लिए सेट वैल्यूज प्राप्त करने के लिए मेथड्स परिभाषित करना
वैल्यूज सेट करने के लिए = साइन उपयोग करके मेथड परिभाषित करना
क्लास के ऑब्जेक्ट्स को शीघ्र दर्शाना और उपरोक्त दो मेथड्स उपयोग करके वैल्यूज सेट और प्राप्त करना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
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है